एक बैग सोफे पर रखा हुआ है व कुछ व्यक्ति यहाँ पर खड़े दिखायी दे रहे हैं व दीवारें रंग-बिरंगी हैं।

जिसमे बोहोत सारे बण्डल है। यहाँ पर रंग-बिरंगे कपडे दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में ये सभी मस्ज्दुर काम करते हुए नजर आ रहे है।

यह एक काली गाय दिख रही हैं। यह गाय केेमरे की तरफ दिखा रही हैं। वह एक सफेद घर है।